ऑपरेशन के लिए आए हुए हैं दांत वाले जहाँ लिखा हुआ हैं जहाँ पे ऑउर हेल्थ एज ऑउर --

हेल्लो गाइस आप देख सकते है की ये अपना विष्णु ढाबा नाम का एक अ ढाबा है।

और एक्से सारे तरह के एक्सेसाईज करने वाले हैं यहाँ पे झुला हैं और बच्चे लोग झूल--

अ वैराइटी वैराइटी के कपीस मिलते हैं और यहाँ पे एक--

और यहाँ पे वेज हब भी हैं और ये आंटी लोग खड़ी--

र हेल्लो गाइस आप देख सकते है की ये एक ट्वेलथ चंडीगढ़ नेशनल क्राफ्ट मेला लग है।

यहां पे सभी लोग अपने अपने फंक्शन के अकोडिंग पार्टी सिपेट किये है जो अभी पार्टीसिपेसशन वाले लोग अभी परफॉर्म कर रहे है उसके बाद अभी नेक्स्ट अ नेक्स्ट --

और इसका बूथ नंबर है ट्वेल्व मिनी मार्किट सेक्टर नाइन डी चंडीगढ़ मोबाइल --

ये यहाँं पे बंधन बैंक और बंधन ए_टी_एम भी है बैंक में जा करके आप चेक जमा कर सकते हो और बैंक वाले ए_टी_एम से जा करके सी --

और यहाँ पर सभी लोग भी एक्सरसाइज़ कर रहे हैं अनुलोम विलोम इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और इसका स्वीट अ लिखा हुआ है स्वीट इज द --

रूटीन हिसाब से लंच डिनर या पे सभी चीज़ बंदोबस्त हैं।

कपूर आइस क्रीम दुकान है और यहाँं पे फ्लेवरस है वेलिना में है स्ट्रॉबरी में है पाइनएप्पल में है पिस्ता में है।

यहाँ पे सभी लोग एयरपोर्ट के अंदर जा रहे है और ये एरपोर्ट पुरी तरीके से बना नही है बन ही रहा है एरपोर्ट --

हेलो गाइस आप देख सकते है की ये एक एस_बी_आई का ऐ_टी_एम है और उसके राइट साइड में एस_बी_आई का बैंक है और यहां पे बैंक में आकर के अपने पैसे को --

एमा कि आल कर सकते है और यहाँ ए_टी_एम में जा कर के उसी पैसे को आपने एकांत में जमा किए उसको जाकर के निकाल सकते है।

गेट गुर्ज करके एक दुकान हैं जहाँ पे ड्राइविंग सक्सेश --

गेट स्केसेस और बी _एस _एन _एल जिओ टी_वी --

और इसका मोबाइल नम्बर दिया हुआ है सेवेन नाइन जीरो थ्री नाइन थ्री नाइन एट जीरो एट वन --

हैलो गाइस आप देख सकते है की ये एक एस_बी_आई का ए_टी_एम है जिसका नाम है--

यहाँ पे ये बेंगलुरु में स्टेडियम ये एस_बी_आई का ए_टी_एम है।

और उसके बगल में एक शोरूम है और ये एस_बी_आई के ए_टी_एम में आप आकर के पैसे निकाल सकते हैं यहां पे अभी जस्ट --

हेलो गाईस आप देख सकते हैं कि एक बैंक ऑफ़ बरोदा का बैंक है और उसी के राईट साइड में एक बैंक ऑफ़ बरोदा का ए_टी_एम भी है।

आप बैंक ऑफ़ बरोदा में आकर के अपने पैसे को अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं और जब मन तब आपको जब निकलना होगा तब आप बैंक ऑफ़ बरोदा में आ--

और इसी के जस्ट नीचे एक कोकाकोला का दुकान हैं जहाँ पे सभी--

तो हेल्लो गाइस आप देख सकते हैं की यह एक स्कूल हैं जिसका नाम गवर्नमेंट --

इस स्कूल के अंदर एक हॉस्टल की फेसिलिटी हैं जहाँ सभी बच्चे लोग आराम से रह सकते हैं।

एंड वाइट वाले फूलस और सभी सरे फूलस लगे हुए हैं--

कार सब अवेलेबल और यहां पे जो कार अवेलेबल उस कार को आप खरीद सकते है जैसे की हौंडा सिटी हो गया ये सब हो गया --

हेलो गइस आप देख सकते है की यहाँ पे कॉफीस मिलती है और इसका नाम है एंड कॉफी स्ट्रॉन्ग --